यह एक सरकारी अस्तपताल का कक्ष है। मतलब सरकारी अस्तपताल का एरिया है जहाँ पर काफी ज्यादा कोविड नाइनटीन वैक्सीन की प्रोटोकॉल के तहत --

यह श्री नर्सिंग होम --

यह एक भीड़-भाड़ वाली बाज़ार का एरिया है। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ रहती है।

यहाँ एक मकान का निर्माण चल रहा है।

जोकि अभी कार्य चल ही रहा है।